यहाँ पे पहाड़ दिखा निचे कुछ लोग यहाँ पे पूजा कर रहें हैं बहुत सारे लोग।

यहाँ पर एक छत है जिस पर देखिये बच्चा लोग योग कर रहें हैं। उधर सूरज दादा दिख रहा है पीछे घर दिख रहा है। देखिये ये लोग व्यायाम कर रहें हैं। ये लोग का ।

सभी लोग जाने के लिए पीछे ब बहुत दूर में हैं। बैठने वाला व्यवस्था भी है। बहुत सारे लोग खड़े हुए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

आदमी बैठे हुए हैं। दुकान दुकान खुला नहीं है।

जो बहुत सुन्दर जगह लग रहा है देखने में।

पीछे से जहाँ पे लोग पास में बैठ कर --